यहाँ पे ठेदत भवन ठान है थेट थता हुआ है माता दुर्गा थेट पड़ी है देखने में बहुत मजा आता है यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है।

प धुप है जिसमें सब कुछ अच्छा लगता है यहाँ से पानी बहुत फटा हुआ है।

टिल टिल टेट ठेल तहा है बच्चों सब है हर ढरा डीठाइ डेटा है बोहोट बढ़िया डीठाई डेटा है हरा हरा डीठाई डेटा है।

यह मठ रहा है देखे में बहुत बड़िया लगता है यह बलून भी लगा हुआ है बहुत मोटा है।

दिठने में बोट अठ्ठा लगटा है बहुत मसठ लागता है दिखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सजावट किया गया है।